इसमें हरी हरी मिर्चे दिखाई दे रही हैं लाल मिर्च भी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे चॉकलेट केक दिखाई दे रहा है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

छः फुट दिखने मे बहुत सुंदर लग रही है इसमें दो कुर्सियां और एक मेज प अं रख--

जिसका रंग काला है और जिसका नंबर एच_आर चौदह तीन दस अड़तालीस है।

इस फोटो में हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।

साइड में सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

खंबे भी दिखाई दे रहे हैं खंबो के ऊपर लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।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

गेट के ऊपर कुछ जानवरों की और पक्षियों की फोटो भीं छपी हुई हैं।

इस फोटो में मंदिर की प्रतिमा सुशोभित हो रही है।

सूखी सूखी घास भी दिखाई दे रही है एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ऑटो के अंदर बैठा हुआ है।

एक लोहे की सीढी भी दिखाई दे रही है।

एक बैटरी भी दिखाई दे रही हैं एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो हेलमेट पहेन कर कुछ काम कर रहा है।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

दो क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं दीवार का रंग--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

इस फोटो में एक भैंस दिखाई दे रही है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है।